अ कुछ फ्लावर लगे हुए है पिले कलर के आसमान दिखाई दे रहा है।

अ तार से बॉन्डिंग की गई हैं।

एक अंकल मोबाईल चला रहै है और यहाँ पे बहुत सारे लाइटस लगे हुए है।

और यहाँ पे एक ऑन्टी बैठी है और एक दीदी खड़ी हुई है।

और यहाँ बड़ा-सा एक ग्राउंड है है और यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है।

अअअ यहाँ फे एक टेबल फे --

हॉल में ए नाइ की दुकान है और यहाँ पे चार चेयर रखी हुई है।

और यहाँ पे कुछ लोग शेविंग बनवा रहे है कुछ लोग बैठे हुए है।

यहाँ पे टीवी लगी हुई है और यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर और फेस वाश रखे हुए है।

एक अंकल बैग टाँगे हुए है फैन लगा--

अंदर गार्डन है गार्डन में बहोत सारे पेड़ लगे हुए है बहोत सुंदर-सुंदर फलोवेर्स लगे हए है।

यहाँ पे ए.सी लगी हुई है और यहाँ पे कुछ बनिये रखन मे सामान रखा हुआ है।

बहोत बड़े-बड़े खोके रखे हुए है खोखो में सामान रहा हुआ है बिच में लाइट लगा हुआ है।